और दो पंखे लगे हुए हैं जीने के साइड में दो चटाई रखी हुई है।

यह एक जिम है जिम के अंदर जिम मशीन भी है।

यह एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल का कमरा है।

और एक व्यक्ति पेट्रोल गिरवा रहा है।

हरे भरे पेड़ भी लग रहे हैं।

एक ए_सी और कुछ व्यक्ति बैठे है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

और बाहर बहुत सारे व्यक्ति खड़े है और कुछ बाइके भी खड़ी है।